जिसमें एक व्यक्ति अपने शॉप में अपने साथ सेल्फी ले रहा है।

और मुझे पीछे से फेविकोल के बंडल भी दिख रहे है और मुझे कार्ड बोर्ड भी दिख रहा है और बुक कॉपी भी दिख रहे --

जो बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं और उनके साइड में मुझे पेड़ दिख रहे हैं और आगे मुझे --

और मुझे जिम की दीवारें भी लिखकलर में है जो येल्लो क्रीम ब्लैक कलर में हैं।

बोये हुए दिखे रहे हैं जिसमें काफी धान बोये गए हैं।

अनेकों भगवान की मूर्ति दिख रही हैं और अनेकों व्यक्ति --

न्यू का दिख रहा है जिसके सामने मुझे एक स्कूटी और --

शादी की सजावट की तरह लग रही है जिसके अगल-बगल दो --

तुम मुझे एक तस्वीर दिखाई जा रही है। यह तस्वीर में मुझे एक व्यक्ति --

चेयर के ऊपर बैठा हुआ दिख रहा है और उसके आसपास --

मुझे एक तस्वीर दिखाई जा रही है। यह तस्वीर में मुझे आने को मुंबत्तिया दिये के ऊ --

और चलते हुए दिख रही हो अनेकों अगरबतियाँ भी दिख रही हैं।